यहाँ पे कॉलेज के क्लास रूम में सर पढ़ा रहे हैं। बो बोर्ड दिख रहा है और यह कांच की खिड़की लगी हुई है एक फैन लगा हुआ है।

खाना खाने के लिए जहां बफर वफर चलता है लेकिन यह तो सबसे अलग है क्योंकि शायद यहाँं पर पानी वाला सिस्टम हो इसलिए अलग है और यहाँं पर कुछ लोग खड़े हैं चेयर रखी है टेबल रखी हैं।

इस सुपर गोल्ड जिम लेडीज एंड जेट्स फिस्टनेस सेंटर है यहाँ का टाइम हैं छे एएम से नौ एएम प्रोफेसर हैं | यहाँ के नितिन कुमार और उनका नीचे नम्बर लि --

एक गाड़ी का पोस्टर हमें दिख रहा है शायद यहाँ पे गाड़ी का कॉटन बिक-बिक रही होगी। यहाँ पर बहोत सारे रेड कलर के बलून लगे हैं। वाइट कलर के बलून भी हैं।

उ पिंक है | नीचे में भी दो तीन ग्रीन है | तीन पिंक है और सबसे नीचे वाले में भी तीन ग्रीन है तीन पिंक है | बहोत अच्छा लग रहा है पूरा वाइट कलर का है और ग्रीन ग्रीन फ्लावर लगी है।

यहाँ पर बोहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। यह कपड़ो की शॉप है। यहाँ पे मुझे लड़कियों के कपड़े दिखाई --

ये भी शायद ये कार का शोरूम हैं जहाँ अंदर कार खड़ी हुई हैं कार बिकने के लिए और बाहर बहुत सारी बाइक खड़ी हैं जो कि लेने आये होंगे उनकी बाइक हैं।

ये एक शॉप है। जहाँ पर सब कुछ नहीं पर मिरिंडा विरिंडा वगैरा वगैरा की बॉटल मिलती हैं।